बहोत बड़ी मशीन टाइप का कुछ बना हुआ पड़ा है आगे जो बहोत ही बड़ा है वाटर कूलर है लोहे का बना हुआ है जिसमें पानी ठंडा होता है।

कुछ लाल कलर के है कुछ काले कलर के है कुछ सफेद है और इधर एक आदमी बैठा है पीछे यहां पर औरत बैठी है।

और पानी के लिए पाइप लगे हुए हैं यहां पर नीचे ब्लैक कलर की छोटी छोटी स्टूले पड़ी है।

कुछ घर सफेद है कुछ काले कलर भी है उनके पीछे एक बहोत ही बड़ा ग्राउंड भी अंदर छोटी छोटी घास उगी हुई है।